ये एक पहाड़ जैसा लग रहा है जैसे की पहाड़ी एरिया मे होते हैं बड़े-बड़े चट्टान। वहा पे एक लड़का हाफ पेंट --

एक लड़की है बगल मे उसके एक लेडिस भी है और कई सारे आदमी है जो मास्क लगाके कई लेडीजे हैं जो किताबे लेके जैसे की चर्च वगेरह का सीन हो और स्टार वगेरा लगाए हुए है सजाय हुआ है।

ये लग रहा है जैसे की सभी लड़के कही पिकनिक वगेरा मनाने गए हो बहोत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है जैसे छोटे -छोटे पहाड़ है पत्थर है।

ये एक जैसे किसी घाट क सीन हैं यहाँ बोहुत सारे मंडप टाइप में बने हुए हैं।

काफी सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर।

ये एक नाई की दुकान है जहां पे एक छोटा सा लड़का नाईट का कौस्टुम पहने हुए और तीन -चार कुर्सी लगा हुआ है एक बुढ़ा आदमी सामने खड़ा होके टीवी देख रहा है।

ये एक कोई स्कूल जैसा लग रहा है जिसमे सभी ने एक ही कलर की साड़ी पेहन रखी है कई लेडीजे है और इसकी पीले कलर का ये बिल्डिंग है।